ये एक मार्केट है मार्केट में क्लियर रोड है और सामने एक शॉप है जो कि ओपन है बाकी शॉपें आस पास बंद है और इधर साइड में एक रेड कलर का गेट ओपन --

एक पब्लिक प्लेस है और यहां पर एक बहुत बड़ी कार है जो कि चल रही है या खड़ी है और सामने काफी सारे शटर बंद पड़े है जो की अलग-अलग कलर मे है येल्लो है ब्लू है ब्लैक है रेड है और नीचे भी सारे शटर ऑफ है।

ये एक मंदिर है जो कि व्हाइट कलर का है इसपे पूरा का पूरा पैंट हुआ पड़ा है और ऊपर अंधेरा है काला काला और साइड में एक ब्लू कलर की लाइनिंग भी है और इधर नीचे बोन तेल वाला बाउंडिंग भी लगा हुआ है।

सामने नीचे दो सीढ़ियां बनी हुई है इसका गेट जो है वो भी एक रेड कलर में एक इसमें ताला भी लगा हुआ है कुंडी में और इसमें सामने दो मूर्तियां और रखी हुई है मूर्तियों के साथ साथ व्हाइट --

एक पार्क है और पार्क मे यहाँ पर झूले पड़े हुए है और इन झूलों पर कुछ बच्चे बैठे है एक लेडी बैठी है एक बच्चा खड़ा है और जो आगे भी कुछ झूले है जो की यहाँ पर ईस्ट अ कुछ बच्चे खड़े है।

एक गेट बना हुआ है बाहर की साइड का और नीचे कुछ सीढ़ियां बनी हुई है गेट का जो कलर है वो गोल्डन कलर है एण्ड व्हाइट कलर है ऊपर--

पार्क है और इस पार्क में जो है यहाँ पर जो सड़क बनी हुई है इस पार्क में ग्रीन ग्रीन घासों से बॉउंड्री बनी हुई है और सामने बहुत सारे पीपल्स है लेडी भी है छतरियां भी बनी हुई है।

और इसके थोड़ी सी छोटे प्लांट लगे हुए है पेड़ पौधे और नीचे इसकी ग्रीन ग्रीन लाइटिंग भी आ रही है और इसमें गमला भी रखा --

ये एक पेंटिंग बनी हुई है सामने दीवार पर और पेंटिंग मे क्या है की बहुत बड़ी एक तीन चार मूर्तिया बनी हुई है और ये कुछ तस्वीरे बनी हुई है नीचे भी एक तस्वीर रखी हुई है पेंटिंग और इसके आस-पास समान रखा है।

पार्क है और इस पार्क में जो है बहुत सारी घास है छोटे-छोटे पेड़ है जो कि एक ही शैविंग के एक ही आकार में है बड़े भी है पीछे कुछ झूले भी बने हुए है बिल्डिंग है व्हाइट व्हाइट कलर की छोटे छोटे घर बने हुए है एक खंबा है।

चारों तरफ लाइटिंग लगी हुई है और दिल बने हुए है जो कि पेंटिंग लगी हुई है और इनके चारों तरफ भी ब्लू एण्ड पिंक एण्ड व्हाइटिंग कलर में हरे परदे लगे हुए हैं ऊपर भी एक बहुत बड़ी लाइटिंग लगी हुई --